क्योंकि लोगों को आजकल बहुत जरूरत होती है ए_टी_एम हर जगह बने होते हैं हर कस्बे में बने होते हैं हर शहर में बने होते हैं।

दो आदमी खड़े हुए हैं और एक आईटीएम की तरफ जा रहा है अंदर ए_टी_एम लगा हुआ है और ए_टी_एम में टी_वी टाइप से बना होता है उसमें बटन लगे होते हैं।

आंगन की जाल दिखाई दे रही है जाल दो हिस्सों में पड़ी हुई है।

और ये पीछे पेड़ लगे हुए हैं जो कि बड़े बड़े हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं।

ये एक रूम है हॉल है छोटा सा रूम है रूम में ये कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं और एक टेबल पड़ी हुई टेबल शीशा से और लकड़ी से बनी हुई --

है और चारों तरफ उसके चारों तरफ कुर्सियां पड़ी हुई हैं जो कि लड़ लकड़ी गई हैं पूरी--

यहाँ पे तंबू से सजा हुआ और फूलों से सजावट और मेजों से सजावट किया गया हुआ एक गेस्ट हाउस है यहाँ पे एक--

ये एक बिल्डिंग है ये एक बिल्डिंग है ये बड़े-बड़े कॉलेजो के जैसे बिल्डिंग नजर आ रही है इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ हैं।

बिल्डिंग के बाहर छोटी छोटी घास लगी हुई नजर आ रही है जो कि बहोत अच्छी लग रही है इसमें कटिंग के तरीके से करा गया है और बहोत सारे खेत और खिड़कियां नजर आ रही हैं।

जिसपे कुछ लोग खड़े हुए एक लोग खड़े होके बातें कर रहे हैं दो लोग--

बैठे हुए है उसी रेलिंग में आगे खंभा लगे हुए है खंभो पे लाइट लगी हुई नजर आ रही--